एक व्यक्ति बाहर की ओर कुर्सी में बैठा हुआ नजर आ रहा है जिसके बाल सफेद रह सफेद है।

और हम देख सकते है कि ये बहुत बड़ी सी दरवाजा बनाया हुआ है जिसके सामने कुछ सूचना दिया हुआ है सावधान कृपया एक मरीज के साथ एक व्यक्ति ही जाए ।

अंदर में काफी एक टेबल रखी हुई है जिसमें काफी सारे सामान नजर आ रहे हैं और हम देख सकते हैं कि चारों तरफ जो रूम है वह तोता रंग में रंगा हुआ है।